जो की पूरा हरा भरा दिख रहा है ये मैदान जिसमे पूरे ग्राउंड मे पेड़ ही पेड़ उग चुके हैं। ये तलाव के अंदर से--

ये देखो ये नदी की फोटो देख सकते है ये काफी गहरी काफी बड़ी नदी सी दिखाई दे रही है ये देखिये नदी के साइड ये नदी पहाडों के बीच निकली हुई है।

ये नाव जो है काफी बड़ी है इस टापू पर देखिये काफी बड़े बड़े पेड़ लगे हुए है ये समुद्र के बीचो बीच ये जो टापू है जो की काफी अच्छा लगता हैं। समुद्र के बिछो बीच टाप--

पहाड़ पे आप देख सकते है की कितने पेड़ पौधे उगे हुए है ये पूरा हरा भरा पहाड़ दिख रहा है देख सकते है कितने सारे पेड़ है इस नदी काफी --

ये देखिये ये समुद्र की बीच की फोटो आप देख सकते है काफी बड़ी बड़ी शिप है ये देखिये कितने सारे नाव ही दिख रही है।